क्योंकि एक अ मिठास जो होती वो केक काट कर ही उसको सेलिब्रेट किया जाता है।

और ए कहीं ना कहीं हरी मिर्च का प्रयोग नजर उतारने में भी किया जाता है।

हिरण राजस्थान में एक राज्य पशु की मान्यता दी गई है हिरण को।

किराने की दुकान होना जरूरी है जिसके पास है वो बोहोत ही अच्छी बात है।

कई बड़े शहरों में उके एक उत्तम व्यवस्था वाले भी व्यायाम शाला यानी की जिम होते हैं।